यहां पे एक बहोत बड़ा हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है जो पीले रंग और सफेद रंग से पूता हुआ है।

हॉस हॉस्पिटल के पड़ोस में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

इसके अंदर बहोत सारी लाइट और कुर्सियां भी दिखाई दे रही है।

यहां का आसमान नीला और काले रंग का दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे बहोत सारे बच्चे और आदमी औरतें नहा नहा रहे हैं।

इसके पड़ोस में एक खेत है जहां पे एक बहोत बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा है।

जो काले रंग की है यहां पे एक मेज़ दिखाई दे रहा है।

जो काली है इसके ऊपर ह घास उगी हुई है।

यह एक मोबाइल सेंटर की दुकान है जो लाल और सफेद रंग से पोती हुई है।

पे एक जंगल दिखाई दे रहा है जहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे यहां की हरियाली बहुत अच्छी दिखाई दे रहीं है।